और दोनों तरफ फुल भी लगे हुए है और सामने एक मोर भी है देख में बहुत अच्छा लग रहा है और पीछे तीन ----

और यह बहुत सारी दुकान खुली हुई है है यहां पे अम्म्म कपड़े छाता यह सब बिक रहा है और देख कर --

शानदार सजीटी ये किसी मुस्लिम लोग का लग रहा है लगता है और ये देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है पुराने जमाने का--

ये छोटी-सी कोई प्राचीन काल की मंदिर लग रही हैजो कि शिव मंदिर है।

ये तीन फ्लोर का बिल्डिंग है जो कि कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर बोहोत ही अच्छे-अच्छे कपडे मिलते है शादी के कपड़े भी मिलते है इसके सामने बोहोत ही ऊँची सीढ़ी बनी है।

और जिसके बगल एक और आदमी खड़ी है और दो गाड़ी पार्क है मोटर साइकिल और ये पर्स बहुत ही अच्छा लग रहा है।

आसमान नीला नीला लग रहा है यह देख कर बहुत अच्छा लग रहा है ।

और शायद चरण-चरण स्पर्श भी है ये दो दुकाने--

और ये पेड़ बहुत ही अच्छा लग रहा हैंऔर इस पहाड़ी चढने के लिए एक रास्ता बना हुआ हैं जो की बहुत ही शानदार दीवाल भी हैं वहां पे--